इस मैदान में काफी सारे लेडिस और जेंट्स लोग इकट्ठा हैं।

एक आदमी भी नजर आ रहा है।

यह साइकिल का कलर काला और हरा रंग का है।

इस अस्पताल में जाने के लिए बाहर से लोहे का सीढ़ी बना हुआ है।

यह लड़की मास्क लगाई हुई है और काला कलर का शूज पहनी हुई है।

दो लेडीज लोग बैठ कर सब्जी बेच रही है।

इस रोड के और एंड साइड एक दो ऑटो लगा हुआ नजर आ रहा है जिसका कलर पीला है।

एक आदमी खड़ा होकर बोर्ड पे कुछ दिखा रहा है।

दो तीन गमला में भी फूल लगा हुआ है इस अपार्टमेंट का दीवाल का कलर पिंक है।

इस दृश्य में एक दुकान का चित्र है।

दो आदमी लोग हैं जो चेयर पे बैठे हुए हैं और ए_सी भी लगा हुआ है।